यहाँ पर कुछ लेबर है जो घर बना रहे हैं यह घर पूरी तरह अभी नहीं बनी है इसे और अच्छे से बनाया जा रहा है एंड घर के बगल में एक बहुत बड़ा पेड़ है उसके बगल में बहुत छोटे-छोटे और भी घर बने हुए हैं।

एक लड़का खड़ा है व्हाइट टी-शर्ट ब्लू पैंट में और ग्रीन कलर की टोपी उसने लगाई हुई है नीचे में एक नीचे में बैलून्स वगैरह रिबन वगैरह पड़े हुए हैं।

सब यहाँ आते है दवाई लेने --

यह एक रेस्टोरेंट है। जिसका नेम फूड ट्रैक है। उसमें बोहोत सारे लोग आते हैं एंड इसमें बोहोत सारे वैरायटी वैरायटी के खाने मिलते है।